structure analysis पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे: स्ट्रक्चर में परमाणुओं के बीच की दूरी नापना हाइड्रोजन बांड्स दिखाना नॉनपोलर इंटरेक्शन्स पहचानना
और विभिन्न rotamers प्राप्त करने के लिए रेसीड्यूज़ में बांड्स को घुमाना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको chimera इंटरफ़ेस से परिचित होना चाहिए यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu os वर्जन 1404chimeraवर्जन 1102 mozilla firefox ब्राउज़र 420 और एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन
यहाँ मैंने एक chimera विंडो खोली है
कमांड लाइन उपयोग करकेsqualene synthase का एक स्ट्रक्चर खोलेंयह pdbकोड 3w7f के साथ एक transferace एंजाइम है
कमांड लाइन पर टाइप करें open space 3w7f एंटर दबाएँ
एंजाइम का एक मॉडल पैनल पर दिखता है
presets मेन्यु उपयोग करके डिस्प्ले को interactive 1 में बदलें
प्रोटीन दो कॉपीज़ की तरह दिखता है
किसी भी एक कॉपी को मिटाने के लिए टाइप करें delete colon dot a एंटर दबाएँ
स्ट्रक्चर से साल्वेंट अणुओं को मिटने के लिए टाइप करें delete solvent एंटर दबाएँ
इस स्ट्रक्चर में ligand farnesylthiopyrophosphate है
कमांड्स उपयोग करके ligand रेसीड्यूज़ को लेबल करेंटाइप करें rlabelस्पेस ligand एंटर दबाएँ
दो farnesylthiopyrophosphate हैं जोकि इस स्ट्रक्चर में शोर्ट में fps है
स्ट्रक्चर्स sticks डिस्प्ले में दिखते हैं
स्ट्रक्चर को घुमाएं और ज़ूम इन करें
बहुत सी साइड चेन्स हैं जो हाइड्रोजन बांड्स को fps के phosphate oxygens में डोनेट कर सकता है
कर्सर को साइड चेन रेसीड्यू में परमाणुओं पर रखें
serine 21 रेसीड्यू पर जाएँ
अब serine 21 के ऑक्सीजन और करीबी fps के phosphate oxygen के बीच की दूरी नापते हैं
दूरी नापने के लिए serine 21 रेसीड्यू के ऑक्सीजन को चुनें
ctrl key दबाकर रखें और serine 21 के साइड चेन ऑक्सीजन पर क्लिक करें
एक साथ ctrl और shift कीज़ दबाते हुए fps के करीबी फॉस्फेट ऑक्सीजन पर डबल क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यु से show distance चुनें
पैनल का निरिक्षण करेंदोनों परमाणुओं के बीच की दूरी दिखती है सिलेक्शन क्लियर करें
उसी प्रकार tyrosine के साइड चेन ऑक्सीजन और fps के उसी फॉस्फेट ऑक्सीजन के बीच की दूरी नापें
हाइड्रोजन बांड्स के साथ दूरियाँ एक सी दिखती है
हाइड्रोजन बांड्स डोनर और एक्सेप्टर दूरियों के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किये गए हैं: 22 से 25 angstroms मज़बूत 25 से 32 सामान्य 32 से 40 कमज़ोर
अब select मेन्यु उपयोग करके ligand चुनें
रेसीड्यू विकल्प तक नीचे जाएँ सबमेन्यु से fps पर क्लिक करें
fps से बने हाइड्रोजन बांड्स को खोजने का आसान तरीका tools मेन्यु से find hydrogen bond विशेषता उपयोग करना है
structure analysis विकल्प में findhbond पर क्लिक करें
hbond parameters डायलॉग खुलता है
रंगीन बॉक्स पर क्लिक करके हाइड्रोजन बांड के रंग को फिक्स करें
लाइन की चौड़ाई मोटी लाइन के लिए 30 फिक्स करें
label hydrogen bond with distance के सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करें
only find hbonds with at least one end selected पर क्लिक करें
और write information to reply log पर क्लिक करें
ok button पर click करें
पैनल का निरिक्षण करें हाइड्रोजन बांड्स उल्लिखित रंग और लाइन की चौड़ाई के साथ pseudo बांड्स की तरह दिखते हैं
बांड्स का विवरण reply log पर देखा जा सकता है
favorites मेन्यु उपयोग करके reply log खोलें
प्रत्येक हाइड्रोजन बांड के बारे में जानकारी यहाँ दी गयी है
dialog box बंद करें
यदि आप स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन बांड्स हटाना चाहते हैं तो कमांड लाइन पर टाइप करें: tilda सिंबल के बाद hbond एंटर दबाएँ
structure analysisविकल्प में tools मेन्यू में एक अन्य विशेषता है
यह findclashes/contacts हैएक डायलॉग बॉक्स खुलता है
यह विशेषता नॉनपोलर इंटरेक्शन्स जैसे clashes और contacts को पहचानती है
clashes प्रतिकूल इंटरेक्शन्स होती हैं जहाँ परमाणु एक दुसरे से बहुत करीब होते हैं
contacts सभी सीधे इंटरेक्शन्स होते हैं: पोलर और नॉनपोलर अनुकूल और प्रतिकूल clashes सहित
अब सभी अन्य परमाणुओं के साथ fps रेसीड्यूज़ के contacts की पहचान करें
मेन्यु उपयोग करके fps रेसीड्यू चुनें
find clashes/contacts डायलॉग बॉक्स में designate पर क्लिक करें
यह 48 atoms designated दिखाता है
all other atoms के सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें
clash/contact parameters को defaultकांटेक्ट पर सेट करें
treatment of clash/contact atoms में निम्न चेक बॉक्सेस पर क्लिक करें select draw pseudobonds if endpoint atom hidden और write information to reply log
ok बटन पर क्लिक करेंपैनल का निरिक्षण करें
रेसीड्यूज़ के सभी कॉन्टेक्ट्स दिखते हैं
reply log खोलें atomatom contacts यहाँ सूचीबद्ध हैं
dialog box बंद करें
अब कुछ clashes दिखाते हैं
अब tyrosine 248 रेसीड्यू पर फोकस करें
कमांड लाइन पर टाइप करें: focus space colon 248 एंटर दबाएँ
चयन को clear करें
अब tyrosine 248 रेसीड्यू चुनें
ctrl key दबाते हुए tyrosine 248 में एक अन्य परमाणु पर क्लिक करें
पूरे अणु को चुनने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएँ
अब हम एक दुसरे को प्रभावित करते हुए tyrosine 248 साइड चेन को घुमाएंगे और clashes के लिए चेक करेंगे
tyrosine 248 के 4 angstroms के अन्दर रेसीड्यूज़ दिखाएँ
कमांड लाइन पर टाइप करें डिस्प्ले disp स्पेस कोलन 248 स्पेस z less than fourdisp :248 z<4एंटर दबाएँ
clashes को दिखाने के लिए tools मेन्यू से findclashes/contacts विकल्प चुनें
designate पर क्लिक करें
all other atoms के सामने वाले बटन पर क्लिक करें
clash के लिए clash/contact parameters सेट करेंtreatment of clash/contact atoms को select draw pseudobonds if end point atom hidden सेट करें
और frequency of checking को continuously सेट करें
डायलॉग बॉक्स को हटायें
tyrosine 248 की साइड चेन को एक दुसरे से प्रभावित करते हुए घुमाने के लिए
ctrl key दबाते हुएribbon से जुड़े हुए बांड पर डबल क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से rotate bond विकल्प चुनें
build structureडायलॉग खुलता है
डायल पर पॉइंटर को ड्रैग करके बांड को घुमाएं
वैकल्पिक रूप से एंगल वैल्यूज़ को एडिट करने के लिए काले एरोहेड्स पर क्लिक करें
पैनल का निरिक्षण करेंजैसेजैसे साइड चेन घूमती है नए pseudobonds बनते हैं या गायब हो जाते हैं
बांड को वापस वास्तविक स्थिति में लाने के लिए: bond में प्रविष्टि पर क्लिक करें revert चुनें
बांड को ज्यादा देर तक न घुमाने के लिए फिर से bond पर क्लिक करें फिर deactivateपर क्लिक करें
dialog box बंद करें
tools मेन्यू में विकल्प उपयोग करके हम tyrosine 248 के सभी rotamers की तुलना कर सकते हैं
पहले tryrosine 248 चुनें
tools मेन्यू पर क्लिक करें structure editing तक नीचे जाएँ
rotamers विकल्प पर क्लिक करें
rotamer डायलॉग बॉक्स में rotamer library से dunbrack चुनें
ok button पर click करें
पैनल पर rotamers वायर प्रदर्शन की तरह दिखते हैं
एक अन्य डायलॉग खुलता हैrotamer को दिखाने के लिए डायलॉग बॉक्स में लाइन्स पर क्लिक करें पैनल का निरिक्षण करें
हम rotamers के लिए clash और hydrogen bonds का भी पता लगा सकते हैं
columns पर क्लिक करें फिर add clashes चुनें
डायलॉग बॉक्स में ok पर क्लिक करें
अब हाइड्रोजन बांड्स जोड़ने के लिए columns पर क्लिक करें add तक नीचे जाएँ और hydrogen bonds चुनें
hydrogen bonds डायलॉग बॉक्स में ok पर क्लिक करें
डायलॉग का निरिक्षण करें दो नए कॉलम्स जुड़ गए हैं
प्रत्येक rotamer कुछ clashes बनाते हैं लेकिन hydrogen bonds नहीं बनाते
भिन्नभिन्न रेसीड्यू में बांड्स को घुमाकर rotamers को ढूँढने की कोशिश करें
इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: स्ट्रक्चर में परमाणुओं के बीच की दूरी नापना
hydrogen bonds दिखाना नॉनपोलर इंटरेक्शन्स पहचानना
clashes और contacts ढूँढने के लिए रेसीड्यूज़ में बांड्स को घुमाना और भिन्नभिन्न rotamers की तुलना करना
नियत कार्य में squalene synthasepdb code 3w7f का एक स्ट्रक्चर खोलें
clashes और contacts को निर्धारित करने के लिए tyrosine 41 रेसीड्यू में बांड्स को घुमाएं और rotamers की तुलना करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए लिंक पर उपलब्ध है